प्रेयर प्राइस और ये शॉप अभी ओपन है और इस शॉप के आगे बहुत सारे जो है कपड़े है यहाँ पर टंगे हुए है हैंगर पे और शॉप --

की दुकान पे जो है एक गेट लगा हुआ है।

यहाँ पर हमे एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसपे हरे रंग का घास --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

दिए गए हैं और अस्पताल के पास में जो बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो की दोनों हाथ अपनी जेब में डाल रखे है जूते पेहेन रखे है पेन्ट और शर्ट पेहेन रखा है।

और यहाँ पर हम देख सकते हैं की यह एक झरना दिखाई दे रहा है और झरने के ऊपर से पानी गिर रहा है और कुछ लोग यहाँ पर --

यहाँ पर हमें एक शॉप दिख रही है जिस शॉप में बहुत सारी रैक्स बनी हुई है और उन रैको में किताबे रखी हुई है ।

मधेपुरा शॉपिंग एंड डिटेल और यहाँ पर हम देख सकते है कि शॉप के आगे कुछ गाड़ियाँ भी रखी हुई है ।

नजर आ रहें हैं और ऊपर साफ आसमान हम देख सक --

खाली है यहाँ और यहाँ पे कथे कलर की टेबल देख सकते है ऊपर सजावट देख सक --

एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है जिस मिरर में मशीन दिख रही है जो लोग एक्सरसाइज कर रहे है वो लोग भी हमें यहाँ पर दि-दिख रहे है ।